और एक हीरोइन के लिए प्रचार के लिए इसमें --

और इसमें बॉडी बनाने हेतु सामान रखे गए है।

जिसपे वो लिखा गया है। और इसके बाहर एक कार है। एक पेड़ भी दिख रही है।

रहने के लोगो को ठहरने के लिए --

जैसे लग रहा है मुगलों के शासन काल की वो --

ये सिक्स फ्लोर है। इसमें भी इससे अगले वाला वाइट वाला ऊपर में है जो --

व्हाइट शर्ट नीचे ब्लू पेंट --

यह विक्रम ऑटो रिक्शा है।

इससे पंखित हैं और यह ब्लैक --

यहाँ क्लास चल रही है।

उधर शिव प्रकाशित हो रही है। मोर्निंग टाइम है।

और एक लड़का है जोकि खड़ा हुआ है लेकर --

यहाँ महाकाली ढ़ाबा फॅमिली रेस्टोरेंट है।

डायग्रामो के अनुसार ही वो पिक्चर को और वहां के लोकेशन को कवर कर रहे हैं।

जल रही है वो दिख रहा है और लोग मंदिर में जा भी रहे है आ भी रहे है।

और जिम करने वाला तरह-तरह का मशीन भी है। और यहाँ चाट बोर्ड भी --

जो की ऊपर चढ़ने वाला ये फ्लोर बनाया हुआ है ।

और ये रेड पत्थर और ब्लैक पत्थर से बना हुआ है। ये बोहोत अच्छा लग रहा है।